तस्वीर में दो से तीन व्यक्तियाँ भी है जो खड़े तथा बैठे हुये भी है।

ए_टी_एम जो बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का रंग पिला तथा सफेद तथा लाल है।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट का है।

इस दृश्य में कई सारे लोग तथा कई सारे वाहने भी दिख रही है।

इसके दरवाजे को पुष्पों से सजाया गया है।

यह तस्वीर में हमें एक बिजली के तारों का और तथा एक लोहे के खंभे की आकृति दिख रही है।

इसके अंत में एक रस्सी है जिसपर कई सारे कपड़े भी टंगे हुए हैं और एक घर भी है।

इस तस्वीर में बहुत सारे पहाड़ तथा हरियाली दिख रही है।

इस दृश्य में व्यामशाला के उपकरणे भी मौजूद हैं।

इस दृश्य में एक व्यक्ति भी है जो इस कमरे में मौजूद है।

दृश्य में जहां पर एक व्यक्ति एक साइकिल लिए खड़े हुए है।

इस दृश्य में कई सारे पेर पौधे भी है।

इस दृश्य में एक सड़क है जिस पर दो बसें खड़ी हुई है।

इस तस्वीर में कई सारे लोग कतार में खड़े हुए हैं।

इस कमरे का रंग सफेद है और इसमें कहीं सारे बतिया और पंखे भी है।

यह तस्वीर एक व्याम शाला की है।

इस तस्वीर में कई सारे व्यामशाला के उपकरण भी रखे हुए है।

गैराज में एक दरवाजा है जिस दरवाजे का रंग लाल है।

यह दृश्य एक मेले का है।

इस दृश्य में और भी चित्र लगे हुए है जहां पर कम टू लर्न वेलकम गो आउट टू सर्व भी लिखा हुआ है।

इस दृश्य में कई सारी कुर्सियां भी रखी हुई है।

दृश्य में कई सारे पौधों के गमले भी रखे हुए हैं और दीवारों में कुछ तस्वीर तथा कुछ नेम प्लेट भी टंगी हुई है।

यह तस्वीर एक शनि मंदिर का है।

इस दृश्य में किताब की दुकान पर कई सारे लोग भी है।

इस दृश्य में घनी पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक घर भी है।

इस दृश्य में घर की छत टीन से बनी हुई है।

इस दृश्य में एक सड़क भी है।

इस दृश्य में कई सारे लोग उपस्थित हैं

इस दृश्य में बाहर के दीवार का रंग हरा है।